उन गुब्बारों का रंग है ऑरेंज सफेद और हरा--

यह फोटो ऊपर से खींची गई है और नू नीचे एक शहर नजर आ रहा है।

और एक फव्वारा लगा हुआ है जो कि इधर उधर सब तरफ पानी फेंक रहा है।

इस फोटो में एक जंगल का एरिया नजर आ रहा है जोकि बहुत ही हरा भरा है और यहां पर एक हरा काला रंग का हाथ भी नजर आ रहा है जोकि --

इसमें एक बिल्डिंग दिखाई गई है इस बिल्डिंग के बाहर से ये फोटो खींची गई है बिल्डिंग क्रीम और गुलाबी रंग से रंगी गई है।

ओर साइड में मिट्टी का मैदान है और यह सारे एक जाली के अंदर बंद है इसे पिंजरा भी कह सकते हैं।

यह एक परचूनी की दुकान की तरह नजर आ रही है जहां पर आटा और भी बहुत सारी चीजे रखी हुई है।

यहां पर तरह तरह की किताबें नजर आ रही है यह एक बुक स्टोर की तरह नजर आ रहा है यहां बहोत ही अच्छी तरीके से किताबें सजाई गई है।

यहां पर एक पुरानी सी बस नजर आ रही है यह एक बस डिपो नजर आ रहा है जहां पर कुछ लोग --

यह एक ऑफिस का एरिया लग रहा है जहां पर दीवारों पर टेबल फैन लग लगे लगाए हुए हैं एक लड़का बैठा है जो की एक कुर्सी पर बैठा है।

मंदिर के इंट्रेंस पे रेड कारपेट बिछा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है श्री गणेश मंदिर इसके बाहर बहुत सारी बाइके भी खड़ी है।

इस फोटो में बहुत सारी लाल रंग की कुर्सियां दिख रही है जिन पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और ऊपर छत पर --

बैग टांग कर खड़ा है और ये सफ़ेद और--